वार्ड्रोप नजर आ रहा है और ये पिक्चर लगता है बाथरूम का है।

और दो बाल्टी भी नजर आ रहा है।

सारी मछलियां जमीन पर पड़ी हुई हैं मड़ी पड़ी हुई हैं साड़ी ।

आप चाहे तो जाके खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं।

हालांकि ये हमारे लिए नहीं आप ही के लिए है।

पंडाल के बाहर भी कुछ आदमी खड़े हैं।

बड़े-बड़े लाइट्स लगे हुए हैं बड़े-बड़े बिल्डिंग्स भी हैं।

बगल से एक रास्ता भी गुजर रहा है।

ए_टी_एम के बाहर रोड है।

वहां बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

अ प्लेइंग रूम दिख रहा है।

पॉर्क भी रखा गया है।

और बहुत सारे सूज भी रखा गया है आप चाहें तो ले सकते--

साथ में और भी महिलाएं हैं जो कि नर्तिकी कर रही हैं।

सामने एक स्टेडियम दिख रहा है।

पनीर पकौड़ा है चिप्स है नूडल्स है सभी दिए गए हैं खाने को।

सामने सामने एक कैफे नजर आ रहा है।

कैफे में टेबल चेयर लगाए गए हैं।

हालांकि एक भी आदमी नहीं है।

पूरा कैफे खाली-खाली है।

एक लिखा गया एक स्टाइल में लगाया गया है।

ऊपर एक बड़ा सा बीच है।

एक आदमी सड़क पर चल रहा है।

सारे लाइट्स ऑन हैं।

सामने दो चेयर रखे गए हैं।

जिसमें अलग-अलग कैबिन बना अ गए हैं।

कैमरामैन फोटो खींच रहा है।

बुद्ध मूर्ति रखा गया है।

एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ है।

सामने सामने एक तस्वीर दिया गया है।

सामने एक काउंटर है।

जबकि वो बोक्का है क्योंकि आदमी नहीं है तो ऐसी क्यों है।

बकलोल आदमी नीचे झांक रहा है।

कुर्सी पर कोई आदमी नहीं बैठा है।

मैं सोच रही हूं कि कुर्सी पर बैठ जाऊं।

सोच रहे हैं कि हम इस बिस्तर पर जाके सो जाएं।

एक तस्वीर नजर आ रहा है।

एक डिब्बा पर एक लड़का का तस्वीर बना हुआ है।

एक काउंटर दिख रहा है।

हरी रंग की बत्ती जल रही है।

एक बाल्टी भी गिरा हुआ है।

डोमिनोज में हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं।

पिज्जा खाने में बहुत मजा आता है।

का बोर्ड दिख रहा है।

सामने एक आदमी जा रहा है।

सामने एक स्कूटी पर एक लड़की--

बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

एक बाबा जी भी खड़े हैं।

देवों के देव महादेव होते हैं।

एक बड़ा सा हॉल है।

हाल में पंखा लटका हुआ है।

एक कुर्सी भी रखी गई है।

आदमी मछली बेच रहा है।

डेट पर दो रिमोट रखे गए हैं।

सामने दो पीलो नजर आ रहा है।

मुर्गियां अंडा देती हैं और अंडा मेरा भैवा नमन खाता है।

मेरे सामने एक डस्टबिन दिख रहा है पीले रंग का--

एक आदमी पत्थर लेकर भागने का सोच रहा है।

हम भी सोच रहे हैं कि जाते तो खाना पीना खा कर आते--

यहां डेरी ड्राई फ्रूट्स नमकीन सब भी सामान मिलता है।

आप चाहें तो फ्री में ले सकते हैं।

जाने दो कोई बात नहीं मॉडर्न जमाना है घूम सकती है।

मैं भगवान को नमा प्रणाम करती हूं।

एक भी लड़की नजर नहीं आ रही है।

मैदान में उजली चौक गिराई गई है।

लगता है कोई प्रतियोगिता होने वाला है।

सभी बच्चे दौड़ने की तैयारी में हैं।

ट्रैक्टर पर एक आदमी बैठा है।

बाहर भी एक आदमी खड़ा है।

शोरूम है शोरूम में लड़का का कपड़ा मिल रहा है।

वैसे आपकी मर्जी नहीं मन है तो मत खरीदिए।

सामने बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

एक घाट भी नजर आ रहा है।

हॉस्पिटल का नाम चाइल्ड हॉस्पिटल है।

सामने एक दो पहिया साइकिल भी है।

काउंटर पर एक आदमी खड़ा है।

बाहर बहुत से आदमी खड़े हैं।

रोड पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

सामने एक चार चक्का गाड़ी नजर आ रहा है जो कि खिलौना जैसा है।

बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं और बैठी हैं।

सामने एक तस्वीर है।

चेयर पर कुछ सामान रखे गए हैं।

सामने पढ़ाई लिखाई का ही सामान दिख रहा है।

बादल साफ-साफ दिख रहे हैं।

सामने हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

और वहां द चॉकलेट रॉक लिखा हुआ है।

रेस्टोरेंट चलो के बाहर बहुत से आदमी हैं सभी खड़े हैं शांति से--

एक पोस्टल बैनर भी लगा हुआ है।

चित्र में दिख रहा है कि एक क्लासरूम है।

क्लासरूम में एक मैम भी हैं।

मैम बहुत सुंदर लग रही हैं मैम चश्मा लगाई हुई हैं मैम हमको बहुत पसंद--

गाड़ी खराब पड़ी हुई है।

जो कि बहुत ही अच्छा बच्चा है दो गो साइकिल है।

खाने का सामान रखा हुआ है चॉकलेट --

रूम में एक एलसीडी टीवी है।

रूम के अंदर एक चाय की प्याली रखी हुई है।